कुर्सियाँ लगी है। कुर्सियों के पास कुछ आदमी लोग बैठे हुए हैं। यहां पर देखिए मेज पर कुछ कॉपी किताबें और फूलों की माला रखी हुई है।

दृश्य हम देख पा रहे हैं यहां पर देखिए यह एक शादी का हॉल है बाहर की तरफ यह बोहोत सुंदर सा फूलों का गेट बना हुआ है।

दीवार में ए.सी. भी लगी हुई दिख रही है। लाइटे भी जल रही है। अंदर कई सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए यह सामने की तरफ दो हवादार खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और कुछ बेंच पड़ी हुई है।

नीचे एक काउंटर रखा है। काउंटर के ऊपर भी विजय पुस्तक भंडार लिखा है। अंदर बोहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है। काउंटर के पास में एक लड़का भी खड़ा हुआ है।

बोहोत सारे पर्चे लगे वे ए और नीचे जिओ फोन का एक बड़ा सा बैनर लगा है। कुछ मोबाइल भी रखे हुए दिख रहे हैं।

शाखा नीचे कुछ कारे खड़ी हुई है और एक बाइक खड़ी हुई है बहुत सारी औरतें नकाब ओढ़े हुए खड़ी है और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं और एक दरवाजा भी लगा हुआ है। यहाँ पर लाइटें भी जल रही हैं।

टी कैफे और सामने बोहोत सारे गुब्बारे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइक --

और अंदर देखिए शीशे के दरवाजे लगे हुए दिख रहे हैं। कुछ आदमी और औरतें भी बैठी हैं। बराबर में एक मेडिकल स्टोर है।

इसमें हम देख पा रहे हैं यहां पर देखिए यह शटर लगा हुआ है जिसमें की चैनल भी लगा हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ लिखा हुआ है इंडियन बैंक ।

चैनल के पास एक औरत खड़ी हुई है। औरत ने साड़ी पहनी हुई है और गोद में एक छोटा सा बच्चा लिया हुआ है और एक छोटी सी बच्ची भी साथ में खड़ी है।